यहाँ पर ब्रिच भी लगाए गए हैं।

और यहाँ पर काफी सारे पेड़-पौधे भी हैं।

एक लेडीज है जो कि अपना हारमोनिया लेकर बजा रही हैं।

यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफी सारे टमाटर रखे गया हैं यहाँ पर कुछ टमाटर कच्चा रखे गए हैं।

यह एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी शहर का दृश्य है।